हमारे बेगूसराय में ये नया बस आया है ये बस यहीं पर आकर रूकता है लोग सब यहीं पर आके --

हमारे बेगूसराय के ये पास में ही ये रोड बना गया बनाया गया है खाली सीमेंट और --

यहाँ पे कोई मि मिक्सी विक्सी नहीं आता है यहां पे बहुत अच्छा घर भी तैयार कर दिया हर किस्म का बन्दोवस्त अ --